यहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है बहुत फैंसी है मार्बल बैठायल है पंखा उनखा लगल हेय यहां।

बहुत अच्छा दृश्य यहां लग रहले देखे में आसमान के भी और आस-पास में गाड़ी लगल हेय बहुत खूबसूरत यहां पर घर भी है।

दवाओं के खुदरा विक्रेता लिखल है एकरा में सब दवा मिल रहा हैं।

ये माय के स्टीकर भी लागल है देखे में मस्त लग रहल है।

ये है आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और बगल में भी है एकगो बी.ओ.आई. भी बैंक और यहाँ एकगो लिखल है।

अम्म गाछ पाछ गाछ वृछ भी है छोटा छोटा बहुत मस्त लग रहल है देखने--